चार लड़किया है जो स्कूल की ड्रेस पहने हुए है उन्होने अपने हाथ से बनाई हुई चित्र कला का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे है।

एक लड़की है जो बनारसी साड़ी पहने हुए पैर मे हाथों मे मेंहदी माथे मे चंदन लगाकर नृत्य कर रही है।

दो बाइक खड़ी हुई है दो लोग बैठे हुए है।

एक बड़ी सफ़ेद इमारत है जिसके सामने एक ब्राउन कलर का कुछ बना हुआ है जिसके ऊपर दो गमले रखे हुए है।

चित्र में एक लोगो है जो एक्स बना हुआ है उसमे बीच मे मुछ लगी हुई है ऊपर--

बना रहे हो और उसके साथ साथ यहा पर धुंध भी छाई हुइ--